यह चुरू जिले में स्थित प्ले ग्राउंड है जिसमे विभिन्न कल्चरल और खेल सबंधित क्रिया यहां पर करवाई जाती है और उनको --